जैसे कि मैं देख पा रही हूँ सामने एक लड़का खड़ा है जो की गेरुआ रंग का शर्ट पेहना है जैसे कि मैं देख पा रही हूँ कि सामने एक लड़का खड़ा हुआ लाल रंग का शर्ट पेहना है।

यहाँ पे काले के चेयर में एक लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने बाल कटवा रहे हैं जैसे की मैं देख पा रही हूँ।

सामने यहां पर बेसिन है जैसे कि मैं देख पा रही हूं सामने यहां पे थोड़ी मशीन रखी हुई है जैसे कि मैं देख पा रही हूं यहां पर मिरर लगा हुआ है और मिरर का रंग सफेद और नीले रंग का है।

जैसा की मैं देख पा रही हूँ दो एक घर बना हुआ हैं जिसका रंग नीला रंग का हैं जैसा की मैं --

जैसा की मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर हरे-भरे पेड़ भी हैं जैसा की मैं देख पा रही हूँ सामने एक टॉवर लगी है।

इसपे से तार जा रही है जैसे कि मैं देख पा रही हूं इस रोड में सब उधर गाय भेंड़ बछड़ी खड़ी है।

जैसा की मैं देख पा रही हूँ सामने एक लोग खड़े है जैसा की मैं देख पा रही हूँ इसमे ये पाइप पर एक लोग बैठे हुए --

जैसे कि मैं देख पा रही हूं यहां पर जाने के लिए रास्ता है जैसे कि मैं देख पा रही हूं यहां पर एक सोफे लगे हुए हैं और उसमें तकिया रखी हुई है।

जैसे की मैं देख पा रही हूँ सामने तीन चार पेड़ हैं जैसे की मैं देख पा रही हूँ --

जैसे कि मैं देख पा रही हूं इस गार्डन के पीछे एक घर बनी हुई है जैसा कि मैं देख पा रही हूं यहां पर एक टावर है जिससे तार जा रही है--

पाड़ियों यहाँ पर एक काले रंग का पाइप रखा हुआ है जैसे की मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर छोटे-छोटे डब्बे में रंग रखे हुए हैं।

लोग खड़े हैं जो लाल रंग के कपड़े पहने हुए हैं जैसे कि मैं देख पा रही यहां पर बहोत बड़ा सा दुकान है जैसे कि मैं देख पा रही दुकान में लोग सामान ले रहे हैं।

से की मैं देख पा रही हूं यहां पर एक लोग ऊपर में खड़े हैं जिन्होंने पिंक कलर का शर्ट पहना जैसे कि मैं देख पा रही ऊपर में कुछ ड्राइंग सा बना

आह दुहा कलर और सफेद रंग का जैसे की मैं देख पा रही हूँ यहां पर बड़े बड़े पेड़ भी दिख रहे हैं।

जैसे कि मैं देख पा रही यह सुबह का समय है जैसे कि मैं देख पा रही एक बहोत बड़ा सा--

वह नीले रंग के टी_शर्ट पहने हुए है और गेरुआ रंग का पैंट जैसा कि मैं देख पा रही हूं यहां पे थोड़े थोड़े पानी जमी हुई है जैसा कि मैं देख पा रही हूँ घर--

पंखे के डब्बे रखे हुए और इसमें अलग अलग पंखे रखे हुए हैं जैसे कि मैं देख पा रही हूं।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

बहुत सारे रंग के हैं जैसे की मैं देख पा रही हूँ यहां पे ट्रॉली बैग --

जैसे कि मैं देख पा रही यह एक सुबह का समय है जैसे कि मैं देख पा रही हूं यह एक रथ यात्रा है जैसे कि मैं देख पा रही हूं --

इस रथ यात्रा को बहुत सुंदर से सजाया गया है फूलों की माला से।